और ये चार लोग अ इंतजार मे अपने नंबर लगा कर खड़े हुए है एक ये येलो कलर का व्यक्ति है एक ये लड़की है और ये लड़का अपने चेहरे को कांच मे देख रहा है।

ये हमारे इधर का बस स्टेशन है यहाँ पर सभी जगह बस यही से निकलती है।

चित्र में अ कुछ मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ रहे हैं।

ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक चर्च का है इसमें ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है सभी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं।

ऐसा लग रहा है या तो ये गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस की सभी सम्मलित हुए ताकि अपने राष्ट्र के लिए उनके मन मे एक भक्ति जागृत हो।

यहाँ पर लाल पीले हरे नीले सभी प्रकार के टी कप है जो आप खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं एवं अन्य सभी वस्तुएँ भी यहाँ पर मिली मिलती हैं।

ये हमारे इधर के एक भैया हैं जो बलून डेकोरेशन करते है ये बलून के द्वारा नए-नए तरह के डिज़ाइन बनाते है एवं पूरे घर को सजाते।

आप देख रहे है बच्चों के पेपर आ रहे है तो सभी अपने नए-नए पेन ले रहे है जिससे वो अपने एग्जाम मे अच्छे से लिख सके।

ये लड़का इस ल व औरत के बाल काट रहा है।

आप देख सकते है ऊ ऊ सैलून की ये फोटो है पीछे --

ऐ भगवा एवं वाइट एवं ग्रीन एक अलग ही लुक पीछे दे रहा है।

आप देख रहे हैं आज यहां पर आर्ट की एक नई नई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को कार्य दिया गया जिसमे बच्चों ने कागज कलम एवं पेन एवं वेस्ट पदार्थ का उपयोग करके नई-नई चीजों को बनाया है।